आजू बाजू में बहोत ही हरे भरे घने पेड़ दिख रहे हैं और बहोत ही सुंदर ऐसे पहाड़ियां नजर आ रही है।

आजू-बाजू में बहुत सी बसें खड़ी दिख रही है यह एक बस स्टॉप हो सकता है।

वह दिखने में बहोत ही टेस्टी लग री है और लाजवाब लग रही है।

बीच में एक बहोत ही हरा-भरा और बहोत बड़ा पेड़ दिख रहा है उनके पीछे में एक घर भी दिख रहा है।

हैं परमात्मा एक ट्रैक्टर गैरेज माडगी यह एक गैरेज है जहां पर सभी प्रकार के ट्रैक्टर --